इस तस्वीर मे एक बिल्डिंग दिख रही है उसके नीचे बहुत सारी लड़किया खड़ी हुई है एक आदमी गाड़ी लेकर खड़ा हुआ है घास दिख रही है घास के ऊपर एक गाड़ी खड़ी हुई है बादल दिख र--

बोटले रखी हुई दिखाई दे रही है लाइटे दिखाई दे रही है सफेद छत दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में घर बनने का काम चलता हुआ दिख रहा है पाँच आदमी दिख रहे है लकड़ियाँ दिख रही हैं।